यहाँ देख रहे होंगे आप बहुत सारे पेरट तोता सब बने हुए हैं और यहाँ एक काँच है।

और यह बहोत सारी चेयर भी रखी हुई है आप देख रहे होंगे बालू कलर में।

आप देख रहे हैं एक कंप्युटर रखा हुआ है कीबोर्ड भी है माउस भी है और टेबल भी देख रहे होंगे और एक चेयर भी रखी हुई है और एक प्रिन्ट मशीन भी है।

और यहां गाड़ियां भी रखी हुई है कार भी रखी है एक बोलेरो भी रखी हुई है और लाइट भी लगे है भैया लोग जा रहे हैं यहां बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।